यहाँ बहुत हरा मिर्ची है आदमी कुछ कर रहें हैं।

मकान व्हाइट कलर और अनेक कलर में है मकान के साइड में एक गाछी दिखाई दे रहा है।

ये बहुत ही सारे गाड़ियाँ है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।

यह गोदाम है जहां गाड़ी धोता है गाड़ी--